यह एक ई रिक्शा के शोरूम का फोटो दिखाई दे रहा है।

यह एक यात्री कंपनी की ई रिक्शा खड़ी है।

जिसमें अलग अलग मंदिर बने हैं।

और एक साइड में स्कूटी खड़ी है।

नीचे इसका मोबाइल नंबर भी लिखा है।

यह एक परचून की दुकान--

और काफी सारे गुब्बारे लगे हैं।

यह एक पिज़्ज़ा प्वाइंट दिखाई दे रहा है।

गुलाबी और लाल कलर की चादर बिछी है।

टायर इसके आगे के टायर है।

और एक गुलाबी कलर की है।

जो सिल्वल कलर के हैं।

यह फोटो किसी कॉस्मेटिक की दुकान का लगता है।

और महिला हाथ में कुछ ले रही है।

और एक चौतरा दिखाई दे रहा है।

और साइड में मशीन है।

यह फोटो रात को लिया गया हैं।

यह फोटो एक पार्क से लिया गया है।

और इसमें काफी भीड़ दिखाई दे रही है।

यह किसी ई-रिक्शा क्या शोरूम का फोटो है।

और एक हाईवे दिखा दे दे रहा है।

इसमें एक दुकानदार खड़ा है।

डाइनिंग टेबल पर व्हाइट कलर की चार प्लेट दिखाई दे रही है।

और इनके कंधे पर बड़े बैग दिखाई दे रहे हैं।

रूम की खिड़कियों पर कुलर लगे हुए हैं।